पत्ते के जैसा सजाया हुआ है इ इस सैलून के चारों और शीशा है और ऊपर में ए.सी. का भी लगा हुआ है।

यह एक एनिवर्सरी केक है और इस केक को रेड और व्हाइट क्रीम से सजाया गया है ये ऊपर में रेड रेड के जैसा --

यह एक तल बिल्डिंग बनाया गया है यह बिल्डिंग बहुत ही नया ही बनाया है इस बिल्डिंग में दो‌ दरवाजे एक बड़े दरवाजे एक छोटे दरवाजे बड़े दरवाजे के सामने --

जिसमें विभिन्न रंगों का प्रयोग किया गया हैं जिसमें से नीचे सफेद हैं और ऊपर में रेड ग्रीन और विभिन्न सजावटी कलर से सजाया गया।